और सामने एक मॉनिटर भी लगा हुआ है और एक आदमी व्हाइट कलर की शर्ट पेहेन कर खड़ा है। सामने कागज से कुछ लिखा हुआ --

सामने एक तालाब दिख रहा है जहा पर बहुत सारे लोग तालाब के अंदर हैं।